जहां यहां पाइप और घर बनाने वाले सारे समान बेचे जाते हैं --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

इस पर कुछ लोग आते जाते नजर आ रहे हैं सामने हरे भरे पेड़ पौधे हैं कुछ गाय भैंस दिखाई दे रही है।

बहुत सारी बाईके भी यहां खड़ी नजर आ रही है।